नमस्कार दोस्तों arrays और functions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
कुछ उदाहरणों की सहायता से
function के लिए अरै को पास करना
function में exit statement का उपयोग
फंक्शन में return स्टेटमेंट का उपयोग
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
आपको bash में arrays और if statement का ज्ञान भी होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system और
gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें gnu bash version 4 या उपरोक्त इस tutorial के अभ्यास के लिए अनुशंसित है
हम पहले सीखते हैं कि function के लिए array को कैसे pass करते हैं और इसका उपयोग कैसे करें
मैं function _ underscore array dot sh नामक file खोलती हूँ
यह shebang line है
हमारे function का name array _ underscore display है
open curly ब्रैकेट function definition खोलता है
dollar @atsign का उपयोग इस श्रेणी में पिछले tutorials में विस्तार से बताया गया था
मूलतः इसका उपयोग function में passed किये गये arguments को print करने के लिए किया जाता है
round brackets में dollar @at sign variable array में array elements को संचित करता है
dollar curly bracket खोलें array square bracket में @atsign curly bracket बंद करें
code की यह line एक array के सभी elements को प्रदर्शित करती है
dollar curly brackets खोलें array square brackets में one curly brackets बंद करें
code की यह लाइऩ array के दूसरे element को प्रदर्शित करती है
operating _ systems को elements ubuntu fedora redhat और suse के साथ घोषित किया गया है
यहाँ array operating _ systems function array _ display में passed किया गया है
एक function के लिए array को pass करने के लिए syntax है function _ name space dollar curly brackets खोलें array _ name square brackets में @at sign curly brackets बंद करें
अपने program पर वापस आएँ
इसी तरह colors elements white green red और blue के साथ घोषित है
यहाँ array colors function array _ display में passed किया गया है
अब file को सेव करें औऱ terminal पर जाएँ
type करें chmod space plus x space function underscore array dot sh
enter दबाएँ
टाइप करें dot slash function underscore array dot sh
enter दबाएँ
जैसा कि हम देख सकते हैं operating _ systems के array elements और colors प्रदर्शित होते हैं
औऱ operating _ systems का दूसरा array element और colors भी प्रदर्शित होते हैं
bash में exit और return statements function या program का status code देते हैं
return statement script में return होगा जहाँ से यह कॉल हुआ था
exit statement पूरी script को समाप्त करेगा जहाँ से इसे मिलाया गया है
अब function में return के लिए इन 2 तरीकों को सीखते हैं
मैं return _ exit sh file खोलती हूँ
यह shebang line है
function का name है return _ underscore function
open curly ब्रैकेट function definition खोलता है
यह if statement दो variables की तुलना करता है
यदि दो variables बराबर हैं तो if में commands निष्पादित होती हैं
यह echo statement message को प्रदर्शित करता है
this is return function
return 0 status code 0 zero के साथ control को function से main program में ले जाता है
ध्यान दें return के बाद के statements function में निष्पादित नहीं होंगे
fi if statement के अंत को दर्शाता है
यहाँ function का name है exit _ undescore function
if statement यहाँ दो variables की तुलना करता है
यदि दो variables बराबर हैं तो if में commands निष्पादित होती हैं
यह echo statement message प्रदर्शित करता हैः this is exit function
exit 0 program को समाप्त करता है
fi इस if statement के अंत को दर्शाता है
यह arguments 3 और 3 के साथ function कॉल है
यह message प्रदर्शित करता हैः we are in main program
यह arguments 3 और 3 के साथ अन्य function कॉल है
यह echo statement message प्रदर्शित करता है this line is not displayed
ध्यान दें कि exit program को समाप्त करेगा
exit के बाद कुछ भी निष्पादित नहीं होगा
file को सेव करें और terminal पर जाएँ
type करेंः chmod space plus x space return underscore exit dot sh
enter दबाएँ
type करेंः dot slash return underscore exit dot sh
enter दबाएँ
output मैसेजस प्रदर्शित करेगा जैसे दिखाया गया है
अब program के flow को समझते हैं
control main program में होगा जो स्वयं script है
control function कॉल के कारण return _ function में चला जाता है
यदि दो variables बराबर हैं यह message प्रदर्शित करता है this is return function
फिर यह return 0 को मिलाता है और control main program में function कॉल के नीचे function से statement पर जाता है
फिर यह message प्रदर्शित करता है we are in main program
उसके बाद function कॉल के कारण control exit _ function में जाता है
क्योंकि दो variables बराबर हैं यह message प्रदर्शित करता है this is exit function
फिर यह exit 0 को मिलता है यह program को समाप्त करेगा
exit के बाद कोई भी statement निष्पादित नहीं होगा
इसके अलावा statement this line is not displayed निष्पादित नहीं होगा
आशा है कि इनके बीच का अंतर आप समझ चुकें होंगे
अब संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
कुछ उदाहऱणों की मदद से
function में अरै को पास करना
function में exit statement का उपयोग
फंक्शन में return स्टेटमेंट का उपयोग
नियत कार्य के रूप में एक program लिखें
जहाँ function array में सभी elements का जोड़ function elements के योग को प्रदर्शित करना चाहिए
अरैज elements 123 और 456 के साथ दो function calls बनाएँ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
इस script को fossee और spoken tutorial टीमों द्वारा तैयार किया गया है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद